पास पेड़ पौधे एवं बहुत से व्यक्ति घूम रहे है बच्चे --

हे ये प्लेग्राउन्ड है जहां पर वे--

बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कि नजर आ रही है मार्केट के बिचम बीच एक मकान है जिसमे बहुत सी खिड़की है और आसपास बहुत ऑटो चल रही है और बहुत भीड़ है।

पौधा बहुत बड़ा पौधे यह मौली कलर से पोता हुआ है आसपास बहुत शांति सी दिख रही है।